हाँ यह पर ये बुक्स लेकर फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे है।

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक अंकल अ अ झाड़ू देते हुए नज़र आ रहे हैं।

यहाँ पर थोड़ा पानी भी बेहता हुई दिखाई दे रहा है और कुछ अ ग्रीन ग्रीन छोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

इस पिक्चर मे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कांच की बनी हुई है| जिसके नीचे एक बैंक भी दिखाई दे रही है| बैंक का--

यहा पर कुछ बतखें दिखाई दे रही है जिसमें से एक बत्तख व्हाइट कलर की नजर आ रही है| यहा पर कुछ छोटे-छोटे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में एक ऑटो खड़ा हुआ नजर आ रहा है ऑटो के पास एक लाइट का बोर्ड है जिसमें एक प्लग लगा दिख रहा है इसके ऊपर एक ऑरेंज कलर की बोटल नजर आ रही है यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी लगा हुआ है।

और कुछ टेबले भी दिखाई दे रही है टेबलो के ऊपर कुछ पलेटें रोज़ एण्ड टिशू रखा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक सोफ़ा भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लाइटस है जलती हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक अ-अ दराता भी नज़र आ रहा है यहाँ पर एक ब्लैक कलर का अ टप भी रखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर एक बाइक आती हुई नजर आ रही है और एक वेन येलो कलर की खड़ी --

यहा पर एक लाइट का खम्बा भी नज़र आ रहा है नीचे कुछ रेत पड़ी हुई नज़र आ रही है यहा पर कुछ गाड़ियाँ ट्रक भी खड़े हुए नज़र आ रहे है ।

यहाँ पर पीछे की और कुछ बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे है तो कुछ छोटे छोटे नज़र आ रहे है।